इसमे दो साम दो बफलो और सामने एक कॉलेज दिखाई दे रही है और एक लड़का है जो एक साइकिल पे आ रहा है।